कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं सामने एक सफेद रंग की दीवार और सफेद रंग की--

कुछ यहां पर बैग भी नीचे पड़े हैं।

वहीं सामने काफी सारी खिड़कियां भी नजर आ रही हैं।

यहां पर एक आदमी ने जिसने सफेद रंग की टी_शर्ट पहनी हुई है।

इस चित्र में हमें काफी सारे झूले नजर आ रहे हैं यह एक वाटर पार्क का दृश्य है।

यहां पर काफी सारे लोग खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां के झूले काफी रंग बारिन है।

उसके नीचे पीले रंग का एक गेट भी नजर आ रहा है।

यहां पर काफी पेड़ भी नजर आ रहे--

दो पहिए के वाहन भी ट्रक के साथ में खड़े हुए यहां पर नजर आ रहे हैं।

वहीं इसकी छत जो है नीले कलर की नजर आ रही है।

सामने एक पंखा भी नजर आ रहा है पंखे के साथ में दूसरा पंखा--

वहीं जमीन पर कोई भी चीज नहीं नजर आ रही है।

स्ट्रीट लाइट सिर्फ एक ही है यहां पर जमीन पर काफी बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं उन्होंने हॉफ --

इस चित्र में काले रंग का बोर्ड नजर आ रहा है उसके ऊपर पोस्ट बैंक लिखा हुआ है।

यहाॅं पे रिसेप्शन पे एक क्यू_आर स्कैनर भी रखा हुआ हैं।

इस चित्र में एक मूर्ति नजर आ रही है यह मूर्ति सफेद रंग की है यह माता के हार पहने हुए हैं।

यहां पर नीचे लाल रंग की दरी भी नजर आ रही है।

यहां पे लेफ्ट साइड में एक बोर्ड भी नजर आ रहा हैं वह नीले रंग का बोर्ड है।